उस पर लिखा हुआ है गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है। ये दिन का समय है।

आदमी के पीछे कुछ को दिखाया गया है जो करमा अनुसार लगे है।

बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। जिसपे लिखा हुआ है एटीएम । कुछ मूड साइकिले खड़ी हैं। कुछ स्कूटी खड़ी हैं।

एक आदमी दिखाया गया है जो कि अखबार पढ़ रहा है।

इ रिक्शा के छत नीले रंग की है।